यहां पे बहोत से नि लोग यात्रा करने के लिए आते रहते है यहां से बहुत सी ट्रेने हर एक जगह की--

यह नदी बहोत ही लंबी है यहाँ पे--

नायें भी चलती है जहां पे लोग घूमने के लिए आते हैं और नाव--

यहां पे बहुत ही अच्छा लगता है इस मंदिर के पुजारी बहुत ही अच्छे हैं।

यहां पे डी_जे भी अवेलेबल है जिसपे लोग नाच रहे है।

यह एक जयमाला स्टेज है यहां पे बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया।

इसमें बहुत से बोर्ड भी लगाया गया जो देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है।

यह एक फर्नीचर का दुकान है यहां पे बहोत से फर्नीचर की वस्तुएँ बनती है जो दिखने में काफी खूबसूरत जैसे डाइनिंग टेबल प्लांग ।